अ इ चिड़िया घरा के फोटो छीये।

एमे दू तीन टा नाव लागाल ये जे लागे टूटल फाटएल पुरनका नाव रहे।

कागजों सब लटकल नजर आवे ये किच्छ लिखल अ बहुत सारा किताब ये एठा लागे ये सब तरह के किताब भेंटे ये किताब के बहुत कलेक्शन ये।

जे मे बच्चा सब किछ बनाए रहल ये केंची ये चूड़ी ये फेविकोल से कीछ गोल गोल बन रहल ये ।